में एक आदमी खड़ा होके वो लोग को कुछ बात कर रा है।

इधर में लोहा से बना बना दरवाजा दिखाई दे रहा है इसके सामने में रेड कलर का कुछ दिखाई दे रहा है।

कि शीशा से बनाया हुआ हमें वो दिखाई दे रहा है।

और फिर खिड़की दो दिखाई दे रहा है और फिर इधर में दिखाई दे रहा है पर्दा और फिर इधर में दीवार भी वाइट कलर का है।

दे रहे हैं फिर इधर मे दिखाई दे रहे--

में दरवाजा दिखाई दे रहा है आगे में एक कार्टून दिखाई दे रहा है।

ये बाहर मे एक लाइट जला के है दीवार पे व्हाइट कलर का ह--

और सिलेंडर में एक आदमी दिखाई दे रहा है फिर लोहा लोग भी है।

हमको ये फोटो में चर्च दिखाई दे रहा है।

जो एक होटल है और फिर इधर में समोसा रखे है।

और फिर काले येलो कलर थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है मिट्टी लोग दिखाई दे रहा है।

इसके सामने पत्थर लोग भी है और फिडर मे आसमान में दिखाई दे रहा है और फिडर एक मून दिखाई।

वॉल का दीवार जो येलो कलर का है और फिर पेड़ लोग दिखाई दे रहा है।

फिर उधर में एक टीना से बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और फिर उधर में आदमी खड़ा होके फ़िर उसके सामने है।

में छोटा छोटा पत्थर लोग को भी कलर लगा के भी है।

एक घर दिखाई दे रहा है इसलिए इसके सामने पेड़ लगे हैं।